शायद बगीचे का है सीन ये--

पेड़ों के नीचे बने झूले में--

का ए_टी_एम लग रहा है बहुत ही भीड़ भी दिख रही है।

फाइव स्टार या सेवन स्टार होटल है।